ऊपर से तार खींचा हुआ है दो से तीन गणेश भगवान का मूर्ति बनाया गया है।

पेड़ पौधे भी हैं इधर।

इहां प बहुत सारे सामान रखा हुआ है।

यहां पे कुरकुरा भी रखा हुआ टेडे मेडे भी हैं।

सामने पर मकान बनाया गया हैं।

एक स्विच बोर्ड भी है।

यहां पे बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग हैं।

बिल्डिंग पर पोस्टर भी लगाया हुआ है जो डाॅक्टर आँख के इलाज करने वाला है।

उसके नीचे दो कार लगाया गया है जो व्हाइट रंग के कार है।

यहां पे बहुत सारे दुकान हैं दुकान हैं जो वाइट रंग से पेंट किया गया है पीले कलर से भी पेंट किया गया है।

पोस्टर भी लगाया गया है।

यह एक शादी का फैशन चल रहा है।

यह एक कचकाड़ा वाला थाली है।

उसकी ऊपर एक फरट्टा रखा गया है जो बहुत बड़ा है।

यहां पर बहुत सारे बैलून फूला के टंगा हुआ है। जो पीले रेड कलर का बैलून हैं।

एक आईड पर एक लकड़ी का बेंच बना के रखा हुआ--

एक टेबुल भी रखा हुआ है।

गेट है जो शीशा का है एक उसके अंदर आमदीन भी है।

बॉक्सिंग करने वाला रेड कलर से पेंट किया हुआ है एक आदमीन है जो सर पे टोपी लगाया हुआ है जो वाइट कलर का टोपी है।

सामने पे घर भी है पोल भी हैं पोल पे तार भी घिंचा हुआ है।

ऊपर करकट का दे के पिलर बनाया हुआ है एक सीढ़ी भी है।

यहां पे बहुत सारे कुर्सियां लगाया हुआ हैं।